गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों पर कुछ पानी की बूंदे है बहोत ही सुंदर फूल है।

बहुत सारे प्रकार के फल रखे हुए हैं फल बहुत ही ताजा और फ्रेश लग रहे है।